inkscape उपयोग करके textile डिज़ाइन के लिए mango pattern पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
अब inkscape खोलते हैं
bezier tool चुनें tool controls bar पर
अब प्रदर्शित की तरह canvas पर mango की तरह का डिज़ाइन बनाते हैं यह mango pattern की तरह दिखना चाहिए
आगे star tool चुनें
अब canvas पर star बनाएं selector tool पर click करें
tool controls bar पर width और height को बदलकर 30 करें
रंग को बदलकर लाल करें
आगे हमें star का row pattern बनाना है
यह करने के लिए edit menu पर जाएँ clone और create tiled clones पर click करें
reset पर click करें
rows की संख्या को 1 और columns की संख्या को 46 करें
columns की संख्या mango की आकृति के अनुसार परिवर्तित हो सकती है
create पर click करें अब row pattern बन गया है
सारे stars को चुनें और उन्हें group करने के लिए ctrl + g दबाएं
अब mango की आकृति और star पैटर्न दोनों को चुनें
extensions पर जाएँ generate from path और फिर pattern along path पर click करें
apply पर click करें और dialog box बंद करें
देखें कि आकृति पर star pattern बन गया है
अब mango की आकृति को और उस star row को चुनें और उन्हें डिलीट करें
star pattern चुनें और इसे duplicate करने के लिये ctrl + d दबाएं
अब duplicated key हुए pattern को चुनें और ctrl key दबाकर इसे resize करें
इसे मूल pattern के मध्य में रखें
अब मैं mango की आकृति के अंदर खाली स्थान को किसी अन्य डिज़ाइन से भरती हूँ
bezier tool पर क्लिक करें प्रदर्शित की तरह डिज़ाइन बनाएं
path menu पर जाएँ path effects चुनें
pattern along path में हम अनेक विकल्प ढूँढ सकते हैं
pattern source में पहला विकल्प जोकि edit oncanvas है उस पर click करें
देखें कि canvas के ऊपरी बायीं तरफ 4 nodes बन गए हैं
अब मैं nodes को स्पष्ट रूप से देखने के लिए zoom इन करती move इसे pattern के पास let जाएँ
अब nodes पर click करें और खींचें अब आकृति में बदलाव को देखें
selector tool पर click करें अब path menu पर जाएँ और object to path पर click करें
रीसाइजिंग के दौरान यह आकृति में किसी भी बदलाव को रोकने के लिए किया जाता है
प्रदर्शित की तरह pattern को resize करें इसे duplicate करें और mango के pattern के अंदर रखें
आगे छोटे वाले mango pattern के अंदर खाली स्थान को भरते हैं
star tool पर click करें और एक star बनाएं
अंदर वाले handle पर click करें और इस प्रकार आकृति को दोबारा बनाएं रंग को नीला करें
selector tool पर click करें और आकृति को resize करें
इस आकृति को duplicate करें और छोटे mango pattern को भरें
ctrl + a दबाकर सारे objects को चुनें और उन्हें group करने के लिए ctrl + g दबाएं
pattern को resize करें और canvas पर ऊपरी बायीं तरफ इसे रखें
हम cloning उपयोग करके इस pattern को दोहरा सकते हैं edit menu पर जाएँ clone पर और फिर create tiled clones पर click करें
symmetry टैब में mode simple translation होना चाहिए
rows की संख्या को 8 करें और columns की संख्या को 5 करें
shift टैब पर click करें per column की shift x value को बदलकर 30 करें
create button पर click करें अब canvas पर दोहराव होता है
यह pattern kurta पर इस प्रकार दिखता है
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है एक leaf pattern बनाएं
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएं चलाती है और online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें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
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद